रोशनी से बहुत सुंदर है यह शॉप --

लाइट्स भी है फैन भी है।

इस चित्र में आगे निर्माण चल रहा है।

एक ए_सी पॉइंट भी है गेट के सामने आ के स्कूटर ठेर के हैं अंदर आ कर गार्डन ढेर के हैं एक पेड़ भी है।

काले कलर गेट है एक आदमी है एक औरत बेटे को लेकर के है।

ग्रीन कलर के झाड़ो भी दिखते हैं।

ये दृश्य में आगे एक खेत दिखता है।

दिवालंप पर आके हनुमान का चित्र पट लगाकर है।